एक मॉल है मॉल में तरह तरह के सामान सजे हुए हैं एक तरफ खाने पीने का सामान है एक तरफ बर्तन है।

कमरा बना हुआ है कमरे में आगे एक ल ऊपर लाइटें लगी है चकोर कलर की सफेद लाइट है नीले रंग का की लाइट है।

और लाल रंग का है किनारे किनारे व्हाईट कलर की लाइटें लगी है और दीवार सफेद रंग की है और सामने जो --

और हैंगर में सारे सामान लगे हुए हैं सारे सामान बच्चों के कपड़े ही है।

कमरा है यहाँ तीन लोग बैठे हुए हैं चार फुर चार पाँच कई कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं चार पाँच कुर्सियाँाँाँ --

सिल्वर कलर की है एक मेज है और तीन लोग बैठे हुए हैं।

कमरा है कमरे में ऊपर लाइट लगी हुई हैं और दीवार भूरे रंग की है ऊपर की छत से आधी छत जो है --

और एक आदमी के बाहर एक स्कूटी है एक कार है स्कूटी पर एक आदमी जा रहा है।

और अंदर एक एक आदमी चल रहा है किनारे एक कार खड़ी खड़ी हुई है ऊपर दुकान का नाम लिखा हुआ है सफेद रंग से --

उम्म बरामदे बने हुए हैं छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई हैं एक आदमी खड़ा है।

मॉल के अंदर सामान बहुत ढेर सारा भरा हुआ है जहाँ खाने पीने का भी सामान है घर का भी सामान है।

पंखा लगा है सफेद रंग की लाइटें लगी है और सामने रैक पर भी कुछ सामान रखा हुआ है।

इधर कुछ सामान लटका भी हुआ है और सारे सामान खाने पीने के हैं।

गोल मेज लगी है तीन कुर्तियाँ रखी हुई हैं और मेज के ऊपर --

अअ पीले रंग का जग रखा है नैपकिन रखी हुई है।

उधर की तरफ एक कुर्सी रखी हुई है दीवारों पर जगह जगह के पोस्टर टंगे हुए हैं।

और पीछे ये दरवाजा दिख रहा है जो बाहर जाने का दरवाजा है और रैक पे बहुत से सामान है।

एक दुकान है यहाँ पर एए कपड़े टंगे हुए हैं कुछ आदमी लोग कपड़े देख रहे हैं।

एक लड़की पीले रंग का कपड़ा पहनी हुई है वो खड़ी हुई है दो तीन लड़कियां इधर सामान के लिए खड़ी--

चार पाँच रोटियाँ रखी हैं लाल रंग का कुछ रखा हुआ है पीछे दीवार दिख रही है जो थोड़ी सफेद रंग की है।

और एक सीढ़ी दिख रही है उस पर सफेद रंग की लाइट लगी है और बाहर यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं एक दरवाजा है एक खिड़की है।

नीचे दुकान है और ऊपर सबके ऊपर बिल्डिंग जैसी बनी हुई है सामने सफेद रंग --

किनारे खिड़कियाँ लगी हुई हैं और सामने बोर्ड पर लि ऊपर लाइटे लाय सफेद रंग की लाइटे ऊपर की तरफ लगी हुई हैं।

और कुछ भूरे रंग के कुछ सामान पड़ा हुआ है।

प्लाई वुड रखा है एक मेज पर अ फेविकोल रखा है एक डिब्बे में एक शीशी में फेविकोल रखा है।

और पीले रंग का एक अअ डंडी जैसा बना हुआ है।

और ग एक तरफ डस्टबिन रखा हुआ है बीच में एक छोटी सी अलमारी रखी है बाकी सजावट के कुछ सामान रखे हुए हैं।

दुर्गा माता जी की है लक्ष्मी माता जी की है और पूजा का कुछ सामान रखा हुआ है --

रुम जैसा बना है इसमें एक पअअ बेंच पतली सी रखी है इस पे ऑरेंज कलर के गद्दे पड़े हुए हैं।

एक इस्टूल रखा हुआ है दो कुर्सियाँ हैं मेज है और --

उधर अलमारी पे कोई सामान रखा हुआ है और कंप्यूटर रखा हुआ है।

पेट्रोल पंप है यहाँ पेट्रोल पंप की पाइप लगी हुई हैं नीचेएएए भूरे रंग के ईटे लगे हैं महरून रंग के ईटे लगे हैं।

दो ठो खंबे हैं अ पीछे की साइड में एक दीवार है दूर एक प पक्षियों वाला पेड़ दिख रहा है।

मैदान में एक पेड़ लगा हैं एक बच्चा इस पेड़ के ऊपर बीच में खड़ा हुआ हैं पीले रंग की शर्ट पहने हैं नीले रंग की --

स्विमिंग पूल हैं और वाटर पार्क हैं वाटर पार्क में फिसलने वाले झूले लगे हुए हैं ।

और पानी में पानी भरा हुआ हैं इसमें और इसमें कूदने के लिए इधर किनारे से सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं ।

दरवाजा दिख रहा हैं ऊपर खिड़कियाँ दिख रही हैं ऊपर एक बरामदा दिख रहा हैं ।

किनारे एक लाइट लगी हुई है जो बुझी हुई है तार दिख रहा है।

दु कोई दुकान हैं दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं ।

और किनारे वाले हिस्से में कुछ औरतें खड़ी हुई हैं जो नारंगीवाली साड़ीपहने हुए हैं ।

और लाइट कलर की भी सारी पहने हैं दीवार के अंदर कुछ अ सामान --

बहुत खूबसूरत हुई हैं बाहर की तरफ ये दरवाजा लगा हुआ हैं एक आदमी खड़ा हैं एक एक्सरसाइज कर रहा हैं यहाँ पर --

ऑफिस हैं ऑफिस में कुर्सियां लगी हुई हैं और हर कुर्सी के सामने एक छोटी सी डेस्क लगी हैं उसपे कंप्यूटर रखे हुए हैं ।